यहां पर एक किराना की शॉप दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक्स_वाई_जेड सुपर स्टोरेज अमर सिंह पूरा लिखा हुआ है।

सामने कुछ औरतें कुछ बच्चे व कुछ बूढ़े व्यक्ति भी खड़ा खड़े दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर एक ब्लैक कलर की टंकी पड़ी दिखाई दे रही है और आसमान कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है और एक हरे कलर की चद्दर लटक रही है।

प्रोग्राम के लिए बनाया गया है छत पे छोटी छोटी लाइटें लगी हैं सफेद बड़े सोफे रखी हुई दिखाई दे रहे हैं।

जिसके बाहर गमलों में कुछ छोटे बड़े पेड़ पौधे व बड़े बड़े आसपास और भी बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहें --

यहां पर पिंजरे में बंद दो तोते दिखाई दे रहे हैं।